यह तस्वीर एक ऐसे जगह की है जहां पर--

तीन बैंक का ए_टी_एम एक साथ है जिसमें की पेहला यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया है दूसरा है तथा--

तथा कुछ देर के लिए पानी का ठहराव हो रहा है यह--

खुशी हुई जब प्रभात है जोकि एक उचे स्तर से नीचे स्तर में गिरती है कुछ लोग यहां आनंद लेने भी जाते हैं।

सफेद इस इमारत को लोग गौर से देख रहे हैं।

कचरे का गाड़ी खड़ा हुआ है जो कचड़ा लाने और ले जाने का काम करता है।

एक युवक तस चट्टानों से पूरी तरह घिरा हुआ है।

यह एक वेवसाइक दुकान है जिसका नाम चाहत गिफ्ट स--

इसके दो कान होते हैं जो खड़े होते हैं इसे गदहा कहते हैं।

ताकि इमारत जल्द ही बन जाए छड़ सीमेंट --

जिसमें सेम कॉलम सेम जगह सेम खिड़की रखी गई है।